ये एक ऑफिस का जगह है।

और यहां बहुत सारी चीजों का--

खास करके सफाई का--

की जगह है जहां पर--

भी काम के लिए आते हैं।

ये अवसर पे दिया जाना था--

ये एक ऑफिस का सीन है।

में मौजूद है जो कि--

एक नाव पर सवार है।

चारों और घुमाते हुए--

ये एक बाहर का सीन हैजहां पर--

यहां पर बहुत सारे लोग--

ये एक हॉस्पिटल का सीन है।

सभी वीडियोस काफी होती है।

ये ऑफिस का दिन है।

हमारा बर्थडे बनाया गया है।

इसकी जो बीच-बीच में कमाल की गई--

बहुत सारे जीमर जीम करने आते हैं।

सभी जिम के लिए सभी मशीने मौजूद हैं।

सभी प्रकार के पत्ते मौजूद होते हैं।

ये फूल का सीन है।

अपने बाजू में ही मिलता है ज़्यादा--

ये मेला का सीन है जहां पर--

बहुत सारे लोग बच्चों के झूले पर--

सोफा की दुकान है जहां पर--

बनाये हुए मिल सकते है।

इस है पीले रंग का बिल्डिंग है।

ये एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट कह सकते हैं।

इस मे किताब मोजुद है।

दुकान में बहुत सारे सामान है ।

यहां इसके पीछे बहुत सारे पेर पौधे --

आगे एक ग्रिल लगी है जो की लोहे की है।

अभी तो फिलहाल पता दिखाई दे रहा ।

जूते का शॉप है कह सकते है।

लगभग छकाले कलर की कुर्सी लगी है।

कुछ लाइट्स भी रखे गए हैं।

इसके पीछे एक व्यक्ति है।

जो बहुत अच्छा दिख रहा --

ये फ्रूट की दुकान है।

ये पिले रंग की फ्रॉग है।

जो भी कॉपी किताब बेचने वाला है।

दुकान चला रहा है --

इसके आसपास बहुत सारा घुट्टी होगा--

लोग है जो जिम करते हुए दिखाई दे रहे--

उनके के हाथ में डंबल भी है।

और तिरंगा लगाया गया है।

स्वेटर का कलर रंग की है ।

ये कुछ लिखा गया है ।

पूरे हमारे देश को सझाया जाता है।

ठिक वैसा ही है और फिर तो --

ये एक फ़ील्ड है कह सकते है कि मैदान हैं।

साइड में दुकान खोल रखे --

और यहां एक पोस्टर लगा हुआ है।